यह तस्वीर मंदिर के बाहर से लिया गया है।

इस तस्वीर में जो चित्र दिख रहा है इसमें एक दुकान दिख रही है।

इस घर के बगल में बहोत सारा फील्ड खाली है।

यह सारे परदे एक रॉड में टंगे हुए हैं।

इस पंडाल के अगल बगल बहोत सारे केला के पेड़ लगाए गए हैं।

इस आदमी ने एक पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस होटल की बाउंड्री गोल्डन कलर से की गई हुई है।

एक चित्र में एक समुद्र का दृश्य दिख रहा है।

इस चित्र में जो दृश्य दिख रहा है यह एक बिल्डिंग की पार्किंग का है।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

इनमें कुछ कुछ माटी भी दिख रही हैं।